एक दीवार है जिसमें काफी सारे फोटोज लगी हुई है जिसमें एक लोग प्राइज लेते हुए दिख रहे हैं।

सामने कैमरा लगा है बेड रखा हुआ है स्विच बोर्ड दिख रहा है दीवार दिख रही है दरवाजे दिख रहे हैं एल.ई.डी. लाइट जलती दिख रही है कैमरे लगे हुए हैं।

एन्ड टेबल कुर्सी चेयर रखी हुई हैं लाइट लगी हुई है दीवार दिख रही हैं।